आ यहाँ पे ये चर्च है और गेट लगा हुआ है जिसका रंग लाल है और लाइट लगी हुई है जिसका रंग सफेद है। बहोत सारे आदमी आए हुए हैं चर्च में पूजा करने--